कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

इस चित्र में एक गेस्ट हाउस दर्शाया गया है।

और बहोत सारे इलेक्ट्रिक सामान बिक रहे हैं।

येलो कलर का ब्लाउज टंगा हुआ है और एक रेड कलर का ब्लाउज टंगा--

और पीछे एक बहोत बड़ा पेड़ दिख रहा है।

को दर्शाया गया है जिसके नीचे वा पानी का बहाव बहोत तेजी से चल रहा है।

बाहर एक आदमी खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की टोपी पहन रखी हैं और पास में ही एक गाड़ी खड़ी है।

और उस का बोर्ड लाल रंग में है।

इस चित्र में साईं बाबा की मूर्ति को दर्शाया गया है।

ओर ये जहां खड़ा है वहां पर लाल रंग की एक रेलिंग दिख रही है।

पांच व्यक्ति खड़े हैं और उनके पीछे बहोत सारी बाइके दिख रही हैं पीछे लड़कियां भी दिख रही हैं जो कि मोटर साइकिल के पास खड़ी हैं।

इस चित्र में सादी के पंडाल को दर्शाया गया है जिसमें व्हाइट कलर की कवर लगाके बहोत सारी कुर्सियां रखी गई है।

बाहर दो आदमी खड़े हैं एक ने अपने गले में गमछा बांध रखा है एक ने--

उसके ही बगल में एक आदमी व्हाइट कलर --

सेल्फी के पोज में खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहन रखी है।

इस चित्र में बेटियां के कलेक्ट्रेट --

जिसमें एक आदमी व्हाइट कलर टी शर्ट पहन के बड़ी सी कुर्सी पर बैठा है।

इसमें एक बड़ी सी अलमारी है ब्राउन कलर की जिसका--

इस चित्र में दुर्गा माता के इस मंदिर को दर्शाया गया--